यह एक फुटबॉल का ग्राउंड है। ग्राउंड पर काफ़ी हरी-हरी घास लगी है। यहाँ पर बच्चे फुटबॉल का मैच खेलते है।